सामने एक मशीन रखी है जो ग्रीन कलर की दिख रही है ऊपर टीन सेड डाला गया है जो लोहे का है।

दुकान के बॉर्डर पे वाइट कलर से पेंटिंग की गई है नीचे फाउंडेशन पर डार्क येलो कलर से पेंटिंग की गई है।

पानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा है कोई भी जानवर भी नहीं दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में बहुत सारे पत्थर दिखाए गए हैं इनमें से ये पत्थर कुछ व्हाइट कलर के हैं।

जिनमें बॉर्डर पर ब्लू कलर से पेंटिंग की गई है सामने एक बोर्ड लगा है।

सामने की तरफ एक अलमारी दिख रही है जो की वुडन की चॉकलेटी कलर की अलमारी है।

कई रोशनदान भी लगाए गए हैं उनमें ट्रांसपेरेंट कांच का यूज़ किया गया है।

जो काफी खूबसूरत लग रही है साइड से एक पाइप गया हुआ है जोकि वाइट कलर का लग रहा है।

इसके बालों में कुछ चिमटीज भी लगी हुई है चिमटियों का कलर रेड कलर से किया गया है।

हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे हैं जोकि हेयर कटिंग से रिलेटेड है सामने एक मिरर भी लगाया गया है।

सामने जो बंदा आ रहा है वो व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पेंट पेहने हुआ है।

एक बच्चा जो ग्रीन कलर का हेलमेट पहना हुआ है दूसरा बच्चा रेड कलर का हेलमेट लगाए हुआ है।

इमेज में क्राफ्टिंग के काम को दिखाया गया है यह मैन क्राफ्टिंग लग रही है।

बहुत ही सुंदर पूर्वक दृश्य लग रहा है चारों तरफ हरियाली भरे पेड़ लगाए गए हैं।

सामने एक कार खड़ी है जोकि वाइट कलर की है सामने एक ट्रक भी दिखाई दे रहा है जो लाइटे जलाए हुआ है।

इसका नाम है केरला होटल वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट केरला होटल को ग्रीन कलर से इंग्लिश के कैपिटल लेटरस में लिखा गया है।

सामने स्टेयर्स गई हुई हैं जिनमें ब्लैक कलर की मार्बल्स का यूज किया गया है।

इस इमेज में एक ग्राउंड में एक बच्चा कुंग फू कराटे की ड्रेस पहना हुआ है।

सामने ग्राउंड में एक चेयर पड़ी है जो वाइट कलर की दिख रही है सामने एक टेबल है।

इस इमेज में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं लोग हाथ में थैला पकड़े हुए हैं।

जिसका नाम राकेश ट्रेडर्स रखा गया है राकेश ट्रेडर्स को हिंदी में ब्लू कलर से लिखा गया है।

नीचे बहुत सारी मशीने रखी गई हैं सामने एक प्लाईवुड दिखाई दे रहा है।

उसमें बी_ए इंग्लिश में कैपिटल लेटर से लिखा है सामने एक गणेश जी की मूर्ति भी दिखाई दे रही है।

इस इमेज़ में एक होटल के एक रसोईघर को दिखाया गया है सामने दीवार पर रसोई घर लिखा गया है।

चिकन के पोल्ट्री फार्म में चारों तरफ से बास की बल्लियों से बाउंड्री की गई है जो की चॉकलेटी कलर के हैं।